यहां एक खेत दिखाई दे रहा है खेत में--

झाड़ भी लगे हों बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ गाड़ियां चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं।

दो आदमी अंदर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ भी--